और रेड जो की टी चेयर रखी हुई है।

यहाँ पे एक भरतनाट्यम करते हुए औरत का चित्र दिखाई दे रहा है जो पैर पे मुहूर लगाई हुई है और हाथ पे चूड़ी पहनी हुई है।

यह किसी दुकान का सीन है यहां पे स्टेशनरी शॉप जैसा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पर की रिंग पेन बैग यह सारी चीज यहां पर दिखाई दे रहा है साथ ही साथ कुछ बुक्स भी दिखाई दे रहा है बुक से भी--

और यहाँ पे एक लड़के जो हैं झकते हुए नजर आ रहे है ए_सी का जो अं-- सामान हैवो नीचे पे रखा हुआ है ऊपर खुली आसमान के नीचे है।

सामने में एक बोहोत बड़ी लॉरी लगी हुई है गाड़ियों उसके आगे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैफिक जाम है क्योंकि गाड़ी के पीछे का सिग्नल से पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम है और यहाँ पे ज़ेबरा क्रॉसिंग जैसा दिखाई दे रहा हैजो कि सफेद पट्टी में बनाया है।

यहाँ पे कुछ - कुछ मगे भी दिखाई दे रहे है पानी पीने के लिए एक ब्यक्ति यहाँ पे बैठे है जो शायद खाने के लिए आये हैं एक दो लोग वेटर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी शॉप का सिन है या सुपर मार्केट का जहाँ पे बोहोत सारे अ क्रीम पाउडर और ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ।